व्हाइट कलर का फर्श है और पीछे में कुछ लकड़ी का सामान --

और यहाँ पे एक कार दिखाई दे रही है वाइट कलर की और यहाँ पे ऊपर में --

यहां सामने में एक रोड रोड जैसा दिखाई दे रहा है अजीब-सा बना हुआ है।

लड़का और यहाँ पर समाने मे कुछ पेड़ हैं और घर जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे।

नीचे में कुछ ग्रीन कलर की बिछाया हुआ है यहाँ पे दीवाल है इसके साइड में कुछ लोहा का अजीब सा दिखाई दे रहा है ऊपर में करकट रखा है।

फर्श जो है पीला में है जो बहोत साफ़-सुथरा दिखा --